यहाँ अच्छी फैसिलिटी है और बहुत से लोग यहाँ पे लग रहा है की दो दो कस्टमर तीन कस्टमर आये हुए हैं और अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत अच्छा है फुली ए.सी. |

एक आदमी गया हुआ है पहाड़ पे घूमने पहाड़ के बीचो बीच बहोत अच्छा दृश्य है बट यहाँ पे गन्दगी थोड़ा ज्यादा है उस अपने दोस्त के --

दो आदमी जा रहा है दो मोटर साइकिल खड़ा है एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है पेड़ के छाव के नीचे और सामने आई.डी.बी.आई. बैंक है बहुत अच्छा।

लग रहा है केतना एकड़ में फैला हुआ है चारो तरफ से।

लड़का रेड कलर का टी-शर्ट और ब्लू --

और यहाँ रात को भी घूमने का भी --

पहाड़ के साइड साइड एकदम अच्छा दृश्य है।

यह घंटा घर का तस्वीर है।

हूं पेशेंट को ट्रीट करने का सामान उमान रखा हुआ है।

हर टाइप का फूल है यहां पर अवलेबल फूलो का मार्केट है।

दो पंखा लगा हुआ है बहुत सारा चेयर है जिसपे लोग बैठ के --

बहुत अच्छा लग रहा है देखने में मिथिला पेंटिंग और बहुत अ --

तीन स्टोरी लिखा हुआ है कॉपी के ऊपर।